खुला हुआ हैं और कई प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं हारपिक हैं दवाईया हैं बहुत अच्छी चीजे दिख रही हैं यहाँ पे सब यूस का ही समान हैं मेडिकल मे दवाइयाँ वागेर हैं और ये बच्चों का--

बीज बोते है हरी याली है काफी और क्या कहते है लकड़ी लगी हुई है और ऊँचा नहीं है और क्या कहते है पहाड़ है ऊँचे ऊँचे पेड़ बने हुए है और मिट्टी --

बहुत सारा सामान है और यहाँ पे पर्स है ज्वेलरी वगैरह है मेकअप का सामान है और अ यहाँ बहुत सुंदर लाइटें लगी हुई है एकदम लाइटों का नजारा और व्हाइट कलर से बिन अ सेकरा हुआ है पेंट --